चित्र एक दुकान की है। जिसका नाम लक्ष्मी जनरल स्टोर है। सामने की और बहुत-सा प्लॅस्टिक का सामान लगा हुआ है।

यह चित्र एक दुकान की है जिसमे अन्य प्रकार का सामान है सामने की और कुछ खिलेने --

ये एक बहुत बड़े समुद्र की है और इसमें बहुत सी बड़ी नाव है पीछे की और काफी बड़ी नाव है जिसमे बहुतसा सामना है ईस नाव का रंग नीला है।

चित्र एक दुकान की है इस दुकान का नाम बंसीलाल क्लॉथ है सामने की और अन कई तरह की साड़िया रखी हुई है और अंदर भी काफी कपड़े है।

एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी है।

ये चित्र मे एक कार्यलय नजर आ रहा है और बाहर की वर बहुत सारी--

गाड़ी है ठहरी हुई है हम गेट की तरफ से एक कार जा रही है।

चित्र मे एक बहुत बड़ा अस्पताल नजर आ रहा है जिस मे कई सारे कमरे और खिड़किया है पार्किंग बहुत बड़ी है और इस मे कई सारी गाड़िया खड़ी हुई है।